बड़ी है काफी छोटी है और सामाने ऊपर बत्तील दिखाई दे रहे है ब्लू और व्हाइट काफी अच्छा नजारा है।

अच्छा मंदिर है जो की काफी अच्छे बंदना करते है अंकल लोग जो कि एक अंकल सफेद शर्ट और ब्लॅक पँट पेहने एक लडकी है जो--